ये एक लड़की है जो शायद स्टेज में है।

इधर सामने एक टेबल है तीन चेयर है।

जिसमें बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं नीचे पूरा हरा घास है।

यह एक गार्डन का फोटो है जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं लंबे।

यहां पे मुझे इमेज में बहुत सारी बस दिख रही है।

और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो बस में जा रहे हैं या बस में बस का वेट कर रहे हैं।

यहां सामने एक चेयर रखी हुई है स्टूल रखा हुआ है।